पता नहीं क्‍या हमें मालूम नहीं --

और बीच में एक टॉवर उठा लिया गया है यहाँ पे प्‍लेटफॉर्म में बैठने उठने की --

और बहुत सारे लोग यहां पे है टेंपू मयूरी सब से आये हुए है देखने के लिए लेडीज जेंट्स सब लोग आये है यहां पे।

एडिकेस बगल में एक एडिकेस भी है।

अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे कुछ भी बनाने का तैयारी कर रहेे है गोंद ओंद लेके बैठे हुए हैं बच्‍चे लोग।

आ जो रास्‍ता होता है उ बोर्ड पे लिख के बता दिया जाता है। बोहोत सारे लाेेग आये हुए हैं।

डॉक्‍टर है लेडीज़ लड़की सबकी फोटो खिचवाने सैल्‍फी में पार्टी त्योहार में होता है जो फोटो खिचवाना।

प्रखंड एवं सह अंचल कार्यालय --

यही सब यहा पे बहुत लोग गंदे टाइम बैठे हुए हैं।

बालकनी बना दिया गया है यहां पे घूमने के लिए सब --

आज पता नहीं ये लोग कौन है? सोया हुआ है ड्रेस पेहेन के। शायद प्रोग्राम --